यहां पे तरह-तरह की चेयर रखी हुई है लेकिन दिखी नहीं किस तरह की दिखाई देती है।

इस तस्वीर में शादियों की तैयारियां चल रही है जहां कुछ गेस्ट चेयर पर बैठे हुए हैं तो कुछ इधर-उधर नैजराते हुए दिखाई दे रहे है ।

इस तस्वीर में एक हॉल दिख होटल दिखाए दे रहा है जो की इसे पूरी अच्छी तरीके से सजाया गया है प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है।

इस के बहार बहुत ही अच्छी तरीके से गेट का डेकोरेशन चल रहा है जो की बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा --

यहां फूलों से इन्हे सजाया गया है। इसके ऊपर कैंची नजर आ रही है। ये घर दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अट्रैक्टिव है।

इस तस्वीर में एक भवन दिखाई दे रहा है जिसके बाहर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। यहां पे फूलों से इन्हें सजाया गया है।